इसमें डेली यूज की बहोत सारी चीजे जैसे ऑइल --

एक पेड़ लगा हुआ है और उसके सामने एक रस्सी बांधि हुई है जिसमे एक डेकोरेशन करके गमला सजाया हुआ है और यहां पे--

ये एक किराने की दुकान है जहां पे बहोत सारे डेली यूज की जरूरतों की चीजें जैसे साबुन निरमा--

यह एक स्टेशनरी शॉप है जहां पे डेली यूज की जरूरतो की चीजे बहोत सारी उपलब्ध है जैसे फिनायल --

जैसे जरूरतों की चीजें जैसे विस्पर --

खड़े होके लोगों को कुछ बातें समझ रहा है और यहां पे बहुत सारी औरतें महिलाएं बच्चे--

यह एक कारखाना है जहां पे स्टील के बंडल बनाए जा रहे हैं और यहां पे बहोत सारे पाइप बना कर रखे हुए हैं।